के जैसा की हम यहाँ देख पा रहे है अपने लोग हम लोगो ने ये पिक्चर इसलिए क्लिक करा है क्यूंकि ये देख सकते हो आप लोग यहाँ बस खड़ीं है ये बस स्टैंड है यहाँ तीन चार बस लगी हुई है यहाँ एक --

वो आदमी है जो एजेड है अ जो मर्दार लग रहा है आपको भी वो बेच रहे है वो।

ये कुछ मेकॅनिक है जिसने अभी अभी किसी चीज का ये विज्ञानं किया है।

ये एक मंदिर है ऊपर पूरे धी के चार पांच जगह सेनानी खड़े है ताकि इस मंदिर के कोई आस पास कोई इर्द गिर्द कोई अभी अ लोग नहीं आ जाए ना।

जो यहाँ धोप कितनी अच्छी आ रही है ठण्ड के मौसम में धुप लेना काफी लाभदायक होता है यहाँ देख सकते हो आप धुप इतनी अच्छी आ रही है तीन जगह से रास्ते कट रहे है।

यहाँ एक मशीन रखी हुई है ये लेडीज कुछ बेच रही है मे बी की ये कॉफ़ी बना रही है।

ये अक लांड्री लैब है जो अन्दर तो नहीं दिख रहा यहाँ हमने इसकी पिक्चर ली है।

क्यूंकि यहाँ लिखा हुआ है लांड्री लॅब ब्लू कलर से पूरे बड़े से डेकोरेट में लिखा हुआ है ब्लू कलर का गेट है यहाँ अन्दर जाने का साइड से है।

यहाँ लांड्री मतलब कपडे आवर आवर सर्विसेस मतलब यहाँ हमारी सर्विसेज ऐसा करके लिखा हुआ है।

ये पेट्रोल पंप है हमने दूर से पिक्चर क्लिक करा है यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है इस कारण पूरी सड़क भीगी हुई दिखाई दे रही है पूरे ब्लैक कलर की हो गयी है।

और यहाँ बारिश की काफी साफ़ साफ़ चीजे आप देख सकते हो जो पता चल रहा है की यहाँ बारिश अभी है और पीछे पेट्रोलिंग पंप है।

जो मतलब सेक्शन के लोग होते है वही इस साइड आते है पूरी बाइक वाईक लगी हुई है ये पार्किंग की भी जगह है काफी में लग रहा है।

जैसा की आप देख पा रहे हो नीचे ईंटे लगी हुई है येलो और ब्लैक कलर की इस साइड पूरे सीमेंट वगैरा गिरे हुए है सीमेंट की मिटटी दिखाई दे रही है साफ़।

ऐसा करके मेशप करके बनाया गया है इससे अगल बगल में पूरे पेड़ लगे हुए है जो काफी जादा सूखे हुए लग रहे है पीछे पेड़ है जो हरे भरे है एक गाडी खड़ी दिखाई दे रही है आपको --

यहाँ पुलिस आई हुई है ये एक अपार्टमेंट है जहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है पुलिस आई हुई है किसी कारण वश --

और यहाँ काफी अच्छा इधर से धुप आ रहा है इस कारण हमलोग इधर साइड खड़े है और बाइके खड़ी है बहुत सारी --

दोप दूकान दोपहर साड़ेबारा बजे से दो बजे तक बंद रहेगी रविवार बंद ये सब यहाँ लिखा हुआ है ये चंद्रपुर का है।

वाक करते करते पिक्चर क्लिक करा है ऊपर पूरा देख सकते हो पेड़ है अगल बगल पूरे झाड़ी लगे हुए है झाड़ी में --

ये एक तालाव है तालाव के हमने साइड से फोटो क्लिक करा है ये हमने बाइक खड़ीं करी है ब्लैक कलर की बाइक आपको इस पिक्चर में नजर आ रही है।

ये आदमी देखो पीछे अपने फून देख पेपर लेके खडे है व्हलॉग बनाने के लिए पीछे पूरा ये पूरे गाँव का एरिया है गाँव जैसा होता है न--

नीचे देखो कितनी गन्दगी है मतलब इसलिए हमने पिक्चर क्लिक करा है और ये ब्लॉग बनाने के लिए डिस्टर्बेंस है।

एक पिंक कलर का है व्हाइट क्रीम है उसके ऊपर चॉकलेट लगे हुए है दूसरा केक जैसा आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का है येलो के ऊपर पर्पल --

फ्लावर बैठा हुआ है पिंक फ्लावर है क्रीम कलर के ऐसे रोजेज वैसे दिए हुए है इसपे काफी सुन्दर लग रहा है।

ये देखिये कितना सुंदर खूबसूरत गार्डन है गार्डन के बीचो बीच हार्ट जैसा ऐसा बना हुआ है पूरे पेड़ोंके बीचमें जोकि देखने में कितना अच्छा लग रहा है।